कुछ टेबल दिखाई दे रही हैं और कुछ कुर्सियाँ ।

मंदिर का रंग गुलाबी है और हरे रंग का बॉर्डर भी हो रहा है।

कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि नारंगी और आसमानी।

और इसमें लाल रंग के गुलाबी रंग के पीले रंग के फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर घास का हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं। एक अंदर भी खड़ी हुई है दो बाहर हैं और एक साइड में खड़ी है। घर का दो मंजिल का घर है।

बगल में एक टावर भी लगा हुआ है जिसके ऊपर से बहुत सारे तार जा रहे हैं और एक पेड़ भी खड़ा हुआ है ।

यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है और दो --